जिसमे गूगल पे फ़ोनपे पेटीएम का स्कैन दिख रहा है।

नट कस रहें है वे एक सफ़ेद कलर की फोर व्हीलर है देख रहें है।

बहुत सारी झालर लगाया हुआ है बहुत सारी गुलदश्ते दिख रहे है।

ये बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ हैं।

जिसमे बोहोत सारे परचे बिछा हुआ है।

एक व्यक्ति है रेड कलर टी-शर्ट पहन रख रहे है एक दुकानदार कुर्सी के ऊपर बैठा है और बहुत सारे सामान--

इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन एक गाड़ी खड़ा है जिसका नंबर है नाइन ट्रिप्पल एट एक पाइप दिख रहा है।

चारों तरफ पेड़-पौधे नज़र आ रहे है एक छोटा सा घर है ऊपर में अलबेस्टर दिया हुआ हैं टुटा हुआ है।

काट रहे है एक बेल्ट सबके हाथो में एक-एक मछली काटने वाले बेल्ट ही ना बहुत सारे व्यक्ति जो मछली बेच रहे है दो व्यक्ति मछली खरीद रहे है एक बाल्टी दिख रहा है।

एक छोटा सा गेट जो है खुला हुआ है और बहुत सारे बांस खड़े है मिट्टी--

एक स्टेज बना हुआ है स्टेज मे काफी माला सजा है स्टेज के निचे एक कुर्सी है जो पीला कलर के है दूसरे साइट मे छोटे-छोटे कुर्सी है।